काले रंग का बैग है लाल रंग की दो लाइट है।

यहां पर काफी सारे पैकिट्स हैं जैसे कि नमकीन भुजिया का पैकिट है।